ये चाबी लेती हुई एक महिला एक पुरुष--

है ग्राउंड के सामने एक बड़े बड़े से है।

ये एक हॉल में बड़े से में फर्नीचर रखा हुआ है।

ये चाय कॉफ़ी के मग दिखाई दे रहे है चाय कॉफ़ी के मग है ये।

पेड़ पोधे लगे है पोधे लगे है रोड के दोनों साइड में।

गेट के अंदर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई है।

ये तार फेंसिंग का काम तार का फर्श बना बनाया जाराय।

खेत में सामने ही झोपडी बनी हुई है।

ये सामने एक गेट है बड़ा सा जिसमें जिल्हा कलेक्टर शेरपुर लिखा हुआ है।

पीछे एक जिप खड़ी हुई है जीप खड़ी हुई दिखाई दे रही है बहुत सी लाइट लगी हुई है।